--और लाल कलर से बनावल गई और सड़क बी भी वाह और बहुत अच्छा लगी।

ई कोई घर बनाइत हाय जेमे जे इनके कोई के फोटो लगत हाय और एक ठेला हाय

--और कुर्सी उर्सी बहुत बा और उने स्टेज वेस्टेज पर अथि होके ता।

उजर कलर से पेन्ट कइल बा एको अथि